यह एक दुकान है यह दुकान बहोत ही बड़ी है यहाँ बहुत सारा सामान मिलता है इस दुकान में दुकानदार बहुत अच्छे आदमी है यहाँ बहुत सारे ग्राहक सामान लेने के लिए आते --

यहाँ आये हुए है यहाँ पान गुमटी से लेकर बहुत दुकान है रिक्शा भी चलते है।

यह एक किताब की दुकान है यह किताब की दुकान बहुत ही बड़ी है यह दुकानदार फ़ोन में किसी से बात कर रहे है यहाँ बहुत सारे लड़के लड़की किताब लेने के लिए आते है यहाँ सभी तरह के किताब मिलते --

यह एक सरकारी कार्यालय लगता है यहाँ दोनों साइड बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है बीच में एक रोड है एक कम्पाउंड है जो काफी हरा-भरा दिखता है यह जगह बहुत साफ़ सुथरा जगह है बहुत ही अच्छे लगते है।